लाल रंग की लाइनें लगी हुई हैं और काले रंग की ग्रिल्स भी नजर आ रही--

क्योंकि इसके अंदर हमें पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

जिसमें से कुछ मर्द है और कुछ औरते।